और कुछ बारे पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक घास का मैदान दिखाई दे रहा है और बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और दो बाल्टियां भी दिखाई दे रही है और एक तार टंगा हुआ नज़र आ रहा है।

हरि नीली गुलाबी पीली लाइट लगी है और इसके बाहर--

कुछ खिड़कियां और दरवाजे भी लगे हैं।

और पेड़ भी लगे हुए दिख रहे है।

यह चित्र एक अंदर की बिल्डिंग का चित्र है जहां पर हरे रंग के रेलिंग भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

इसका गेट और बाहर बहुत सी बाइक है।

फुक्के लगे हुए नजर आ रहे हैं और दो लड़के भी खड़े हैं।

और एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

जिस पर मारुति सुजुकी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यह एक सर्विस सेंटर है।

यहां पर एक छोटा सा ब्रिज भी बनाया गया दिखाई दे रहा है।

एक स्टैंड पर दो बड़े-बड़े--

और बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में बहोत सारी मछलियां एक केरट के ऊपर रखी हुई नजर आ रही है।

और कुछ बच्चे खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।